यह एक ग्राउंड है यहा पें बारीश आ रहा है यहां पे बहुत सारे जमपिंग जैक लगाए---

का हार डाला गया हैआजू बाजू बाउंड्री है। बहुत सारी यहां पे हरी भरी घास भी उठी हैबहुत सारे यहां पे---

ट्रे रखे हुए हैं बड़े-बड़े कार्टूनस है सामने कचरा पड़ा हुआ है प्लास्टिक पनी पत्ते यहां पे गाड़ियां हैं।

ये एक किराने दुकान है यहां पे बहुत सारे शेल्फ बनाए गया सामान रखा हुआ है।

और यहां पे सरफ के डब्बे पाकिट्स और यहां पे मैगी मसाले मैगी बॉर्मीटा कॉमपलन के डब्बे---

ये एक बड़ा सा एक हॉस्पिटल और यहां पे बहुत सारे बैड्स दिख रहे हैपलंगा---

बच्चे हैं कॉलेज के और यहां पे सर है। यहां पे एक काला कुत्ता भी दिख रहा है। यहां पे बहुत सारे बड़े--

यहां पे बाहर बहुत सारे गाड़ियां हेलमेट बैगा रखे हुए यहां पे बाउंड्री खींची गई कीले की जाली मारी गई---

पेड़ भी दिख रहे हैं और यहां पे नीचे फतरे पड़े हुए हैं और यहां पे अंदर फैना भी बहुत सारे हैं।